यहां पर लोहे के चद्दरों का एक कुछ बनाया हुआ है छपरा टाइप --

सामने बहोत बड़े बड़े पेड़ है और नीचे छोटे छोटे पौधे भी लगे हुए हैं।